इस फोटो में एक मीनार दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक स्कूल मे कक्षा के बाहर कुछ बच्चे बेठे हुए हें।

सीढ़ियाँ जामुनी रंग की है लोक इसे सजा रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कुछ परीक्षण कर रहे हैं। यह एक मैदान है जोकि घांस से भरा हुआ है। चारो तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हैं।